इस दृश्य के अंदर एक होटल गैनुआ पैलेस है जो काफी बड़ी है।

और कुछ छोटे मोटे गमले भी रखे हुए हैं।

उसपे ऐसे दुपट्टा रेड कलर का है।

इस दृश्य के अंदर कुछ टेबल और कुछ सोफे लगे हुए--